यह एक दुकान है दुकान है जो मेकअप का सामान मिलने वाला है बहुत सारे इस पर रंग बिरंगे के सेंट भी रखा हुआ है।

यह एक रूम है रूम का रंग वाइट कलर्स के पेंट किया गया है इस पे डिजाइन झालर भी लगाया हुआ है।

ऊपर टी शर्ट लगाई हुयी है एक कनबालि भी इसकी कान पर है ऊपर कण ऊपर पे लगाया गया है जो बाल खुला हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान पर बहुत बड़े बड़े फूल भी रखा हुआ हैं रंग बिरंगे फूल हैं।

कुर्सी पर एक बैग भी है साइड पर टेबल भी बनाया गया है जो लकड़ी का है ऊपर पे लाइट भी लगाया हुआ है।

जे हरे कलर से ग्रीन किया गया है पास पर जिम करने वाला सामान भी है।

कुछ लोग शर्ट भी पहने हुए हैं यहां पर छठ पूजा के हो रहा है इहां प बहुत सारे सुप दौरा भी हैं।